यहां पर मुझे एक बाइक रिपेयरिंग का शोरूम दिखाई दे रहा है जहां पर एक बाइक को --

की दुकान भी दिखाई दे रही है।